ये एक घर बन रहा है।

पीछे घर बना हुआ है। इसका गेट ग्रीन कलर का है।

ये दुकान है चैंपियन सीमेंट की।

दो लोग खड़े हुए हैं एक अ ब्लू कलर का टी-शर्ट पहने ब्लैक कलर लोअर पहन के --

पिंक कलर का ये कपड़ा डला हुआ है।

नीचे ब्लैक और रेड कलर का कुछ बिछा हुआ है।

हाथी है उस पर खड़े हुए है कोई एक लड़का बैठा है एक उसके पास में खड़ा है पानी फेर रहा है।

ये रेलवे ट्रेक बना हुआ है।

वैन कोई ट्रक में खड़ा हुआ है।

दो लोग खड़े हुए हैं। दलिया रखी हुई है। बल्ब लकी हुए हैं। चार बल्ब लगे हैं।

अ नीचे रेड अ ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है।

नीचे शटर बनी है दो उ दुकाने हैं।

मस्जिद बनी है ग्रीन कलर की।

अ फोटो स्टेट लेमिनेशन शादी कार्ड --

चार चेयर रखी हैं। रेड कलर की चेयर रखे हैं।